सामने क्रिकेट ग्राउंड दिख रहा है जिसमें तीन प्लयेर्स दिख रहे हैं। उनके हाथ में बैट है।

वो गेंदा के फूल दिख रहा है। गेट पे लगा हुआ है। आसमान दिख रहा है मुझे।

सामने दुकान दिख रही है।

और काउंटर दिख ट्यूबलाइट दिख रही है।

बाहर छोटी घास दिख रही है। दो छोटे पेड़ दिख रहे।

ईंट के खम्भे दिख रहे हैं।

लाल रंग का पेंट हुआ हुआ है दीवार पे । खिड़की दिख रही है मुझे। एलसीडी दिख रही है।